अउर में देखत हो कि गेट मन कर फोटो खिंच दिहर अर ये ए एक नंबर बिल्डिंग दिखत हे मैं एतना कहे चाहत हो कि बिल्डिंग में एक दिन जा --

और यहाँ पूरा लगाई दी अधिकारी विश्राम गिरी लिख दी है और गेट के ऊपर लिख दी है और रघु रे मन --